और आगे एक टेंपू खड़ी है ओ कीचड़ से भड़ी है थोड़ी और हॉस्टल है जो रेड कलर से बना हुआ है और आगे भी बहुत सारे घर है और गली में ये --

हैं और नीचे कुछ आदमी खड़े हैं।

वहां ऊपर कुछ लगाए गए है पेड़ पौधों के पत्ते वगैरा और ऊपर कुछ ए_सी लगी हुई है और पास में कुछ लग लोग --

खुला भी कुछ कपड़ा लगाया हुआ है और पास में कुछ बेड की तरह हैं जिनके ऊपर एक चद्दर बिछाई हुई है और पीछे--

इस तस्वीर में एक बहोत ही बड़ा महल दर्शाया गया हैं जिनके ऊपर हरा और यलो लक्ष्मा कलर किया हुवा हैं और इसके ऊपर बादल छाए हुए हैं।

रोलिंग बनाई हुई हैं डीब्बे बनाए हुए हैं छो--

इस तस्वीर में एक बहुत ही बड़ी कंपनी या एजेंसी दिखाई दे रही हैं जिनके ऊपर लिखा हुआ है टोयोटो और नीचे कुछ --

अंदर छेक्कास लगे हुए है और बाहर की तरफ सीढ़ी लगे हुए है पेड़ पौधे है छोटे छोटे --

और सफेद कलर का कमरा है और इस कमरे में डिब्बे दिखाई दे रहें है इस डिब्बों के अंदर कुछ समान होगा।

इस तस्वीर में एक दुकान दुकान दर्शाए जा रहे हैं जिनके ऊपर कुछ अगरबत्तियों के पैकेट और कोई नमकीन के और कुछ नीचे --

इस तस्वीर में एक सजावटी बनाई हुई है जिसके आगे कुछ फूल लगे हुए है।

और नीचे कुर्सी बनाई हुई है रोलिंग नीचे जाने के लिए पानी--

उनमें भी कुछ सामान है और नीचे ये--